और बाहर भी कुछ लोग इधर उधर जा रहे हैं नीचे फर्श है।

बाइक्स खड़ी हुई है एक स्कूटी है एक ऐवेंजर्स है और आ एक आदमी माक्स लगा करके गेट के बाहर खड़ा हुआ है।

और टेबल पे रिमोट रखा हुआ है।

बजरंग मोटर्स पार्ट्स की दुकान है जो की इस टाइम बंद पड़ी हुई है और--

खरीद रहा है और शीशे के ग्लास --